यहां एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क के एक साइड विद्यालय दिखाई दे रहा है तथा दूसरी साइड एक घर दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ पक्षी दिखाई दे रहे हैं और एक काले कलर की बरसती दिखाई दे रही है जिसके ऊपर शर्ट रखी हुई है।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

यहां एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क के साइड में पानी से भरा हुआ गड्ढा दिखाई दे रहा है।

यहां एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसमें एक पर्दा लगा हुआ है ऊपर एक पंखा लगा हुआ है।

यहां एक साड़ी का शोरूम दिखाई दे रहा है इस साड़ी के शोरूम में कई प्रकार की साड़ियां दिखाई दे रही हे।